रही है। वह पानी पी रही है।

रही हैं जिसमें भिंडी रतालू गिलकी शिमला मिर्ची मिर्ची।

प्लॉट दिख रहा है जहां पर कुछ--

मुझे वहां एक बड़ासा हाल

दिखाई दे रहा है। एक रेस्टोरेंट के बाहर--

है बोट के अंदर एक पंखा --

मुझे यहां एक रेस्टोरेंट दिख।--

मुझे यहां पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

जहां कोन दिखाई दे रहा है।

जिसके आस पास किले जैसे बना हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है।

इसके आसपास ब्राउन कलर की--

रहे हैं। एक कार का ढक्कन आगे से खुला दिख रहा है।

इसमें रेलिंग्स भी दिख रही है।